बिजली के तार जा रहे हैं खंबा भी है सामने और व्हाइट आसमान है।

यहां पर बहुत से व्यक्ति है खड़े हैं एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है।

यह एक बहुत सुंदर दुकान दिखाई दे रही है।

बहोत सुंदर सुंदर फूलों से सजाया हुआ है जैसे महरूम हरा पीला ऐसे सजाया हुआ है।

यह एक शादी का माहौल बना हुआ है।

दुकान के अंदर सामान रखा हुआ है।

विंडो भी बन्द है और दीवार पर पेंट हो रहा है पीले कलर का।

दुकान के अंदर ए_सी भी चल रही है बल्ब भी जल रहा है।

फूल रखे हुए हैं पीले कलर के घड़ी भी रखी हुई है--

यह एक बहुत सुंदर दुकान है।

व्यक्ति ने एक लाल कलर की शर्ट पहनी हुई है और उपर आसमानर लगा हुआ है।

दुकान के अंदर एक पोस्टर लगा हुआ है उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है।

इस दुकान के अंदर और भी सामान टंगे हुए हैं।

मूर्ति बहुत ही सुंदर प्यारी लग रही है राधेश्याम की मुरली वाले श्याम की।

और अनार जैसे रखे हुए हैं।

तीन व्यक्ति दो व्यक्ति एक लेडीज --

और सड़क है और यहां पर चकरोड सी है। यहां पर छोटी छोटी हरी हरी घास --

यह एक जिम की दुकान है।

और एक व्यक्ति जिम सीखा रहा है।

सड़क पर बस खड़ी हुई--

जिनके पत्ते हरे हरे दिखाई दे रहे है।

यहां पर मशीन के पास पत्थर पड़े हुए हैं बहोत से।

यह पत्थर बड़ी करने की मशीन है।

और इसके अंदर बहुत सी कुर्सियां रखी हुई है एक मेज है।

नहर के पास पत्थर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

यह एक गोदाम जैसे दिखाई दे रहा है।

और पीला पेंट हो रखा।

इस गोदाम पर और मेहरून कलर की पट्टी भी है।

इसमें बहोत सी मछली रखी हुई है।

एक तरफ दीवारें बनी हुई है ऊंची ऊंची।

यह है एक पार्क है बहुत सुंदर व सामने पेड़ है।